ये ब बहन लोग यहाँ पे आइस क्रीम भी मिलती है यहाँ पे बहोत सारी सब्जियां ऑन भी मिलती है आइट साइड बहुत सारी भीड़ भी है।

यहाँ खजूर के भी पेड़ है। यहाँ बहोत सारे लोग घूमने आते है।

यहाँ एक बिल्डिंग है जो की ट अह डबल ट्रिपल मंजिल की है यहाँ पे सबसे नीचे दो तीन शॉप है जो की--